यहाँ पे फ्रिज व्रीज वगैरा रखे हैं अलग-अलग प्रकार के कंप्युटर वगैरा रखे हैं वॉशिंग मश --

बहुत सारी फूटबॉल भी रखी हुई है चेअर वगैरा रखी हुई है।

वो नाव तालाब मे चल रही है। तालाब मे बीच मे एक रोड टाइप का डाला हुआ है आने जाने के लिए --

समुंदर दिख रहा है सूरज की किरने दिख रही है।

एक कर रेड कलर है यहाँ एक कार का शोरूम है यहाँ पर बहुत सारी बहुत सारी ए सि वगैरे लगी हुई है अलग अलग प्रकार की लाईट भी चल रही है।

सारी स्कूटि अलग अलग कलर की है स्कूटी के नीचे टाइल्स लगी हुई है एक व्हाइट कलर की स्कूटी है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग में एक बैंक है बैंक के बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।